और इसमें घर जो है यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन का घर बना हुआ है वो आदमी --

उम्म अह लाइनिंग वाला व्हाइट ग्रीन रेड फिर लाइनिंग वाला ब्लैक एंड येलो का--

ये देखिए एक हिल स्टेशन का नज़ारा है यहां पर बहुत पहाड़ है और फॉग की वजह से वो पहाड़ ठीक से दिख नहीं रहा है।

जैसे कि हरा है ब्राउन है रेड है ऑरेंज है बहुत सारे ब्लू है बहुत सारे कलर में गमला रखा हुआ है।

और पीछे भी थ्री लोग का स्टूल है और येलो कलर में है और अच्छा है देखने में--

और उसके साईड मे बहोत सारी चीज रखे हुए हैं कपड़ा का और ये एक कंपनी है एल_इ_डी का।

देखिए ये जंगल का नजारा है जो दूर दूर तक हरी भरी जंगले दिख रही हैं पेड़ बहुत ज्यादा है घना जंगल के जैसे लग रहा है।